जो की यहां पर स्टील से बनी हुई है।

कुछ यहां पर झूमर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ शॉप्स दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स हैं।

यहां पर रोड दिखाई दे रही है कुछ कारपेट दिख रहे हैं दुकानों के--

सामने ही हमें ब्लू कलर की लाइट भी दिख रही है।

इसके साथ ही लगती ग्रॉसरी की शॉप है।

यहां पर हमें एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

क्योंकि यहां पर ब्लैक कलर की है। फ्लोर का कलर ब्लैक दिख रहा है।

यहां पर आगे छोटा सा बेड लगा है।

कुछ लोग पीली ड्रेस में हैं। कुछ लोग रेड ड्रेस में है।

व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोग--

सामने एक झंडा लगा हुआ है जो कि हमें--

और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है सामने ही हमें--

व्हाइट कलर का आसमान पेड़ पौधे--

ब्लैक कलर की यहां पर हमें चेयर दिखाई दे रही है।